जमीन पर एक लकड़ी का बहुत बड़ासूट केस है जिस पर डिज़ाइन --

यहाँ एक बहुत बड़ा होटल है होटल में खम्बे लगे है।

होटेल मे हरे रंग का कार्पट बिछा है अंदर रिसेप्शन --